आसमान नजर आ रहा हैं।

खुला आसमान नजर आ रहा है दरवाज़ा नजर आ रहा है कुछ खिड़कियाँ दिख रही हैं ।

यहाँ एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है बड़ा सा जहाँ --

ए छोटा -सा अम दिख रहा है खुला आसमान नजर रहा है कुछ हरे-हरे बड़े पेड़ दिख रहे है |

आप कॉपिस रखे हुये नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक फेस वाश का पैकेट दिख रहा है पाऊच दिख रहा है जहाँ पे बोरोप्लस लिखा हुआ है दो और बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ।.

आ शीशा दिख रहा है लाइट जलते हुए --

थोड़ी -सी पानी दिख रही है छो थोड़ी -सी जगह में ग्रीन -ग्रीन और आसमान दिख रहे हैं ।.

यहाँ एक पट्रोल पंप दिख रहा हैं बड़ा सा पट्रोल पंप का वो अम बोर्ड लगा हुआ हैं जहाँ पर इंडियन आयल लिखा हुआ हैं।

एक झंडा दिख रहा है पट्रोल की मशीन दिख रही है एक रूम नजर आ रहा है कुछ गाड़ियाँ दिख रही है |